यहाँ पर झीलों के पास खड़े होके पानी को देख रहे है इन्होने जाकेट पहन रखी है।

और बाजू में पेड़ हैं काफी दुकानें लगी हैं वहाँ ग्रीन कलर का सेवन अप का बैनर लगा हुआ --

ये नदी में लोग स्नान कर रहे हैं अगरबत्ती लेकर पूजा कर रहे है बोहोत सारे पब्लिक हैं। -

रोड पे ऑटो वगेरा चल रहे हैं और वहाँ सामने ट्रक खड़े हुए हैं। यहां पे कैमरा लगाए हुए है और सब --

यहां पे काफी लोग खड़े हुए हैं और पॉलिथीन वगेरा पड़ी हुई हैं। यहां पे बोट रखी हुई हैं जिसपे लोग यहां पे जमा हुए हैं।

फ्लोरा से टूटा हुआ है सीमेंटेड होगा।

यहाँ पे सीमेंटेड अ शेप में सीमेंटेड स्क्वायर शेप में इस पे पिलर बन रहे है एंड वहाँ पे पहाड़ बन --